बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा हे यहाँ पर बहुत सारे लाइट लगे दिखाई दे रहा हे अंदर में एल_इ_डी मॉनिटर लगा हुआ दिखाई दे रहा हे अंदर में टेबल कुर्सियां नज़र और व्यक्ति नज़र आ रहे हे।

बाहर में एक पौधा दिखाई दे रहा हे दूकान के बाहर में माला लगा हुआ दिखाई दे रहा हे बैनर पोस्टर नज़र आ रहा हे अंदर कांच नज़र आ रहा हे बड़ा सा काउंटर दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक कैफ़े की अंदर की तस्वीर है अंदर में कैमरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है बिजली के बोर्ड बिजली के तार नज़र आ रहे है लाइट लगे हुए दिखाई दे रहे है बैनर पोस्टर नज़र आ रहा है।

बहुत बड़ा काउंटर नज़र आ रहा है दरवाजा दिखाई दे रहा है इसमें कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है टेबल कुर्सी नज़र आ रहे है गिटार नज़र आ रहा है पियानो नज़र आ रहा है यहाँ पर मनी प्लांट का पौधा नज़र आ रहा है।

बिजली का तार दिखाई दे रहा ड्रिल मशीन दिखाई दे रहा हथोड़ी दिखाई दे रहा है कैरिबॅग दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर चलने के लिए रास्ता बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर घर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहा है दिन का समय है आसमान साफ़ दिख रहा है।